यहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति बनी हुई है।

यहाँ लोग पर गिटार बजा रहे हैं वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

टेडी बियर एक औरत है जो कपड़े वगैरह देख रही है।

यहाँ पर नया मॉल ओपन हुआ है यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं बैलून से सजाया हुआ है।